पौधे ग्रीन कलर के डब्बे में लगे हुए हैं ग्रीन कलर के डब्बे भी हैं।

एक दुकान है दुकान का बोर्ड ब्लू कलर का है सेटर भी ब्लू कलर का है काउंटर व्हाइट कलर का है तीन लड़के हैं।

टेबल है टेबल का कलर ब्लू और ब्राउन है।

रूम है रूम का कलर व्हाइट गोल्डन और ब्राउन है व्हाइट बल्फ लगे हुए हैं।

योगा रूम है रूम के दिवाले पर्पल कलर की है स्विच बोर्ड व्हाइट कलर का है।